चावल ही हमलोग खाते हैं।

नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है।

मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का।

और बस खुलने वाली है।

इलेक्ट्रॉनिक दूकान का नाम मोदी इलेक्ट्रॉनिक --

बहुत लोग खाने के लिए आते हैं।

जैसे रहू कतला गोल्डन --

चेक कर घूम रहे हैं और --